इस फोटो में सामने एक कार को दर्शाया गया है कार का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसमें दो कांच दिखाई दे रहे हैं।

चार लड़के दिखाई दे रहे है इनमें से दो गा रहे है और दो बजा रहे है पीछे की तरफ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

बाहर के तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बाते करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं आस-पास की तरफ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

चार बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं पीछे की तरफ एक लेडीज खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने के तरफ एक साइकिल दिखाई दे रही है।

सामने के तरफ छोटा-सा काउंटर बना हुआ है जिस पर दो बरनी रखी हुई दिखाई दे रही है एक टेबल रखी हुई है जिस पर बॉटल रखी हुई है।

सामने की तरफ एक अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि दुकान के अंदर है इन्होने पिंक कलर के कपडे पहने है तीन लोग आस-पास दिखाई दे रहे हैं।

आस-पास कुछ लोग खड़े हैं जिनके हाथ में पर्ची रखे हुए है सामने मेज़ पर बहुत सारे दवाइयाँ रखी हुई है और सिरप रखे हुए हैं कुछ दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दे रहा है इसने ब्लू कलर की जीन्स येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है।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

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग पर हीरो लिखा हुआ दिखाई दे रहा --

जो काफी दूर तक दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है आस-पास कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आस-पास एक घर दिखाई दे रहा है मशीन दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है कुछ लोग इसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं सामने की तरफ कुछ खम्भे दिखाई दे रहे जो की वाइट कलर के दिखाई दे रहा है।

जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ उसकी गुफा दिखाई दे रही है आस-पास सीढ़ी दिखाई दे रही है सीढ़ियों का कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।